एक फैन दिखाई दे रहा है एक बोर्ड दिखाई दे रहा है कई सारा फर्नीचर दिखाई दे रहा है और कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे है जिन--

कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं यहां पर कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं गेट का कलर ग्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका दिवार का कलर वाइट रेड दिखाई दे रहा है और कुछ खिड़कियाँ दिखाई --

कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ऑरेंज येलो दिखाई दे रहा है और कई सारी बाइक स्कूटी दिखाई दे रही है यहाँ पर कई पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--